और यहां पर बोर्ड लगा हुआ है मीटर हमको सामने दिख रहा है दुकान का जो बोर्ड है।

हरे कलर का बोर्ड सामने है और नीली उसप परत है।

पास में कुछ बच्चों के लिए झूले और बैठने की जगह दिख रही हैं।

यह किसी स्कूल या कॉलेज का फोटो है यहां पर कई सारी बेचें रखी हुई है।

कई सारे बच्चे यहां पर बैठकर एग्जाम वगैरा दे रहे हैं।

घूमने आए हुए है बच्चे बड़ों से लेके--

चिकित्सालय यहां पर एक गेट हमें सामने दिख रहा है आगे कुछ घर भी हमें नजर आ रहे--

ऊपर पंखा लगा हुआ है दीवाल जो ऊपर की है वो वाइट कलर की है।

ये मेरा का फोटो है यहां पर कोई बच्चे दौड़ रहे है।

सामने जो दिवाल है वो पिंक कलर की है ऊपर उसके व्हाइट कलर --

यहां पर कई सारी दुकाने हमें दिख रही है बाइके खड़ी हुई है।

तानंद परिषद दिख रहा है गेट जो है इसका खुला हुआ है आसपास इसमें बाउंड्री है।

सामने दीवाल है दिवाल पर खिड़कियां नजर आ रही हैं।

बातें कर रहे हैं सामने हम एक बिल्डिंग देख सकते हैं।

आनंदम इलेक्शन कर के सिटी यहां पर है यहां पर कई सारे तीन चार गाड़ियां रखी हुई है।

एक व्हाइट कलर की गाड़ी हम देख सकते हैं जो उसके नीचे रेड कलर --

स्कोर बोर्ड का कलर ब्लू है उसपे गाय का फोटो भी लगा हुआ है।

इसके यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये जो रास्ता है वो पुरा रास--

और डेकोरेशन में नीचे जो भी वो चॉकलेटी कलर --

सफाई का सामान रखा हुआ है वाईपर हो गया सोफा हो गया छोटे वाइपर हो गए सुपड़ा हो गया।

इस फोटो मे हम देख सकते हैं कि एक पूल का ये फोटो है इसमें काफी सारा पानी आ रहा है आस पास जो है वो--

व कांच का पूरा समान हमें जोकि है दिख रहा ऊपर दीवाल का जो कलर है वो व्हाइट है।

स्कूल में काफी लंबा चौड़ा जो है बच्चों का मैदान दिख रहा है और सामने की ओर स्कूल दिख रहा है स्कूल का --

यहां पर एक टेक्टर जैसी जो है यह गाड़ी दिख रही है।

यह एक खेत का फोटो है यहां पर पानी चल रहा है।

यह जो एक पानी का पूल हमे दिख रहा हैं सामने से पानी आ रहा है।